मैदान भी है फिल्ड है और आस पास पेड़ है।

यहाँ पर पेड़ भी है बच्चे वच्चे खेलने के लिए हर चीज़ है यहाँ पर दो पेड़ है खजूर का पेड़ है वर्क करने के लिए --

पेट्रोल पम्प है एच_पी का पेट्रोल पम्प है डीजल का है।

ये जो फोटो देख रहे है आप लोग ये डैडी फ्रॉम है यहा पर किराणा का दुकान भी है।

ये जो फोटो देख रहे हैं आप लोग यह जिम क्लास का फोटो है यहां पर जीम करने के लिए बंडल रखा गया है।

ये जो फोटो देख रहे है आप लोग ये शायद से स्वीट स्वीट्स का फोटो है।

भी है आसपास सीडी सीडी पर चड़ने के लिए।

और यहा पर दो जेन्स है जो साईकिल से जा रहे है और सड़क है यहा पर और कार है।

यहाँं पर एक मंदिर का फोटो है पीछे भी लेडिस है यहाँं पे पेड़ है पौधे है यहाँं पे चेम --

ये जो फोटो देख रहे हैं आप लोग ये एक गुफा का फोटो हैं यहाँ पर एक गेंट्स शायद से गुफा से बाहर निकले की कोशिश कर रहा हैं और पत्थर पे कुछ लिखा भी हुआ हैं।

इसके पेड़ पोधे भी है नदी में जो नहाने के लिए आये है।

और पेड़ भी है आसपास पीछे एक और भी है।

ये जो फोटो देख रहे है आप ये गार्डन का फोटो है जो कि बैठ ने के लिए अच्छा है बैठ ने के लिए यहाँ पे रखा गया है।

काफी सारे लोग है। एक जेंट्स भी है। एक लेडिज यहां पे सा सा कुछ सामान रखा हुआ है।

पीछे एक पेड़ भी है इसके बिल्डिंग है पीछे काफी सारे घर है।

स्लाइड है जेंट्स है जो अंदर जा रहे है आपस में कुछ काफी सारी बाइक है यहाँ पे--

ये जो फोटो देख रहे है आप यहा पे दो चेयर रखा हुआ है पानी का बिसलेरी रखा है यहा पे।

निचे एक पेड़ भी है यहा पे एक जेन्स लोग बेठे है यहा पे दो जेन्स बेठे है।

यहा पे एक जेन्स भी है जो की बेठा हुआ है एक जेन्स यहा पे मे हाथ डाले हुए है।

ये जो फोटो देख रहे है आप लोग ये अ अनमोल किराणा स्टोर है यहा पे।

और काफी सारे अच्छे स्पीकर लगे हुए है तिन सो नो बारा का स्पीकर है यहा पे।

ये जो फोटो देख रहे है आप लोग ये सायद से सिंगिंग कर रहे है।

इसके हर एक दुकान पर एक आदमी जेन्स खड़ा हुआ है सायद से कुछ सामान खरीद रहे है दुकान से।

और यहां पे पंखा भी है इसके ऊपर लगा हुआ है और ये सब ठीक करने के लिए--

ये जो फोटो देख रहे है यहाँ पर नसरी-नर्सरी सेंटर है जिस के आगे साइकिलों-साइकिल लगा हुआ है।

और आस पास बिल्डिंग बिल्डर है बहुत सारे कार हैं यहां पर।

यहां एक पेड़ भी है आगे है उसका एक जेंट्स भी खड़ा है यहां पर और तिरंगा का एक झंडा ग्रहण बना ने के लिए रखा गया है।

ये जो फोटो देख रहे है आप लोग अ काफी सारे यहा पे--

गाय है इसके निचे बाल्टी में रखा हुआ है एक है इसके--

जोकि बाइक सेल करता है और जेन्स बेठे हुए है।

और मैनेजर बैठा हुआ है आस पास बहुत सारे लोग भी है।

ये जो फोटो देख रहे है आप लोग ये शायद से बिल्डिंग है चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज कॉलेज है शायद से यहाँ पे एक रोड भी है।

और काफी सारे बॉस भी आ रहे है कार भी है और एक अंकल है जो साईकिल से आ रहे है।

काफी सारे मच्छी हैं यहां पे पीछे हर चीज रखा गया है मच्छी उस--

और एक पैर भी है तो बहोत सारे पैर है यहा पर पैर के निचे बाइक रखा गया है।

इसमे एक अंकल एक आदमी को कुछ दे भी रहे है।

ये जो फोटो देख रहे है आप लोग ये पेट्रोल पम्प का फोटो है।

और यहा पे दो चार लोग भी है जो की पेट्रोल --

डाल रहा है गाड़ी में यहां पे गाड़ी भी खड़ा है चार चक्का यहां पे लगा हुआ है।

ये जो फोटो देख रहे हैं आप लोग शायद से कोई पार्क है जिसमें जानवर पाला जाता है।

काफी सारे हिरन है यहां प जोकि अपने अं भोजन के लिए इधर आएं है भोजन कर रहे हैं बहोत सारे पेड़ पौधे भी है बहुत अच्छे हैं।

और इधर देखिए गार्डन जैसा बनाया गया है त्रिकोन यहां पर वर्क करने के लिए जगह भी बहोत--

ये जो फोटो देख रहे है आप लोग ये इसमें बहोत सारी बकरी है बकरा भी है।

यहाँ पे बहोत सारे पेड़ पौधे है जो की बहोत अच्छे है और यहाँ पे पोल भी लगा हुआ है जिस पर बैठ भी गया है।

जो की गार्डन का फोटो है बहोत सारे यहाँपे --

और आसपास भी दो जेन्स है इसके बगल में भी दो जेन्स है।

ये जो फोटो देख रहे है आप लोग ये समुंद्र का फोटो है इसके पीछे कितने सारे पहाड़ी भी है।

ये जो फोटो देख रहे है आप लोग ये किसी गार्डन का फोटो है।

ये जो फोटो देख रहे है आप लोग ये मनीष ढाबा है।

और यहा पर एक मेनेजर भी है दो आदमी है सायद से खाना खाने के लिए यहा आये है।